दे रहे है एक पुरुष माइक दिखाई दे रहा है।

मुझे इस इमेज में एक--

रही है। एक पुरुष दिखाई--

मुझे इस इमेज में एक चर्च दिखाई--

मुझे इस इमेज में एक वॉटरपार्क दिखाई--

देख रहे हैं फिसलपट्टियां दिख रही हैं।

मुझे इस इमेज में एक बुक शॉप दिखाई--